गेट की लाइट्स की शेप डिजाइन अलग अलग कलर की वो भी रखी हुई हैं।

और सभी कपड़े लिफाफों में पैक किए हुए हैं।

ये समान रखा हुआ नजर आ रहा है। कुछ बक्सों में गत्ते के डब्बे में रखा हुआ है। अ रूम में इक चेयर नजर आ रही है।

और पीछे एक आदमी साइकिल चलाता हुआ नजर आ रहा है। उसकी शैडो नजर आ रही है।

की गई घर नजर आ रहा है और एक ईंटों की--

तीन चार चेयर्स लगी हुई हैं और एक टेबल पे काफी यूनिफॉर्म लिफाफों में पड़ी हुई हैं और दो टीचर्स खड़े हुए--

इस तस्वीर में अ पार्किंग नजर आ रही हैं।

इस तस्वीर में एक पार्क का लगा हुआ बोर्ड नजर आ रहा है और ये पार्क के बाहर की साइड है।

जिसपे काफी अच्छे तरीके से साफ सफाई हुई है और पार्क भी है।

इस तस्वीर में एक स्वीट बॉक्स पड़े हुए हैं जो अलग अलग बॉक्सेस खाने में पड़े हुए हैं ऊपर एक मीटर रखा हुआ है।

इस तस्वीर में कुछ क्रियानो की दुकान दिख रही है सामने एक बड़ी सी बड़ी है।

एक आदमी खड़ा हुआ है और ढोलक बजा रहा है बैठकर एक ड--

इस तस्वीर में ए कैं ए एक बोर्ड पे कैंब्रिज लिखा हुआ नज़र आ रहा है स्कूल का लोगो लगा हुआ है।

और कार भी खड़ी है कार के पास एक टेबल रखा है टेबल के आसपास काफी चेयर्स लगी हुई है।

और ये पैलिस ब्राउन एंड व्हाइट कलर के साथ पेंट की गई है।